दो लड़के दिख रहे हैं एक रेड कलर की टी-शर्ट का एक ब्लैक कलर की टी-शर्ट का।

और उसके बाद एक अ झोपड़ी दिख रही है।

और दरवाज़ा टाइप दिख रहा है एक और एक अ पंखा ऊपर अ दिख रहा है।

सामने एक मैदान दिख रहा ग्राउंड जहाँ पर बहुत सारी टू व्हीलर गाड़ियाँ अ रखी हुई हैं।

और सामने कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं भगवान की और एक बेंच लगी हुई है।

और एक रोड जा रहा है सामने के साइड से।

और लाइटें भी चमक रही है पीछे पु इधर की साइड पूल दिख रहा है।

और बहुत सारे गेट लगे हुए दिख रहे हैं।